कि ये जिम है यहां पे तीन ट्रेडमील रखा गया है।

ये भारत पेट्रोलियम का एक टैंक है।

ये पहाड़ है और चारों तरफ हरियाली है।

पीछे भी बहोत सुंदर डेकोरेशन किया गया है।

चट्टान के ऊपर दिखाई जा रहा है कि कृष्ण भगवान हैं जो की बांसुरी बजा रहे हैं।

इसके बाजू में सुंदर से डेकोरेशन किया गया है और बैठने के लिए भी बनाया गया है।

ये बहोत सुंदर सा मंदिर है माता की--

अच्छा और सुंदर लग रहा है।

छोटे-छोटे पौधे रखे गए हैं।

यहां पे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा गया है।

फूल है यहां पे कोई भी नहीं दिख रहा है।

ऐसा लग रहा है कि ये उनका यूनिफॉर्म है और ये कहां पे काम कर रहे हैं।

बस से निकल के जा रहा है।

बाहर सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है।

बहोत सुंदर नजारा दिख रहा है।

घर के सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं।

येलो ब्लैक कलर के बैलून से सजाए गए है।

उनके सामने तीन सिलेंडर रखा हुआ है।

आई है सिलेंडर लेने के लिए--

साफ सुथरा और सुंदर सजाया गया है।

सेमिनार देने के लिए एक जगह है।

नदी की पानी बहता हुआ जा रहा है सामने एक--